एक काटने वाला हसूल रखे हुआ है बांये साईड में एक डब्‍बा है जिसमें पानी --

इसमें कुछ मेक-अप का सामान ड्राज में रखा हुआ है डिजाइन दीवाल में भी कुछ किया गया हैं।

इसके बाद में जो टहनियां दिखाई दे रही है वह बड़े भयंकर --

जिसमें कुछ गमला टाईप के भी रहता हैं।